ऐक माइन इया लगरो है होटल के बार फवारा लागेड़ा है डेकोरेशन करेड़ी है।

वो सामने दो पेड दिख रही है बड़ा बड़ा पेड़ दिख रा है एक बिल्डिग काम चल राखो है बासडा पड़ा है।

कोई एक गार्डन सो दिख रहा है चारो तरफ पेड़ पोधा दिख रहा है साइड में टेंट लाग रखो हैं।

बड़ा सारा पोस्टर लागयेड़ो है वी आर केयर फॉर --